यहाँ पे तो हम देख देख रहे हैं कि एक अ-अ-अ-अ पहाड़ जैसा है पर्वत जैसा है पहाड़ और इसके बीच मे हमे एक रास्ता दिखाई दे रहा है पत्थर काट के बनाया गया है सीढ़ी जैसा है।

अ-अ-अ तो इसके ऊपर से हम इसके अ-अ-अ पहाड़ के ऊपर हम जा सकते हैं और यहा पर कुछ पेड़-पौधे भी हैं पहाड़ के ऊपर में। तो बहुत ही बढ़िया ये रस्ता है बहुत ही अच्छा है।

उसके अंदर उसके ऊपर तो बोहोत सारे पेड़ पौधे भी नजर आ रहा है और यहा पे एक ग्राउन्ड है| इस ग्राउन्ड मे तीनों लड़के है और अपना खेल कूद कतरा हुए इन्जॉय कर रहे है | यहाँ पर कुछ और पेड़ पौधे भी नजर मे आ रहा है| बोहोत बढ़िया है।

बहुत बड़ी पूजा चालू हुआ है। और यहा पर एक मूर्ति हमें दिखाई दे रहा है और यहा पे पूजा का बहुत अच्छा लाइटिंग भी बहुत अच्छा नजर आ रहा है और ये मतलब पूजा--

यहां पे शायद रिचार्ज करने के लिए भी लोग आता है और भी मोबाइल रिपेयरिंग के लिए भी आता होगा एक बंदे यहां पे खड़े है दुकान में वो शायद यहां पर आया है कोई काम में चाहे रिचार्ज कराना हो चाहे मोबाइल रिपेयरिंग हो तो बहुत ही बढ़िया है जगह और मोबाइल शॉप तो बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तो।

--और यहाँ पर अ दूसरा जो एक औरत है लड़की है वो दूरा गे चला गया है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है न--

और यहाँ पे रोड हमें दिखाए दे रहा है ये जो रोड है ए रोड हो के हमें पहाड़ में उतरना होगा हो पहाड़ में ऊपर पहुँचना होगा और यहाँ पर बहुत सारे जंगल-वंगल पेड़-पौधे भी बहुत नजर में आ रहा है बहुत ही बढ़िया लग रहा है जहाँ भी वहाँ पर जाए और पहाड़ में ऊपर उड़ते --